फोटो मे हमे एक सब्जी बेचने वाला दिख रहा है।

ये फोटो में हमे एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है।

यहां पे जो फादर है वो खड़े हुए कुछ बता रहे हैं।

ऊपर हम पंख देख सकते हैं जो व्हाइट कलर के हैं।

फोटो में हमें टेंटस दिख रहे हैं राइट साइड में जो ग्रीन कलर के हैं।

उसके आसपास डेकोरेशन हो रहा है और लाइट्स भी लगी हुई है।

यह एक फिश मार्केट की फोटो है जहां पे हमें एक आंटी दिख रही हैं।

इस फोटो में हमें बहोत सारे लोग सफेद कपड़ो में एक बुक पकड़े हुए दिख रहे हैं।

येलो चादर ओढ़ी हुई है और उन्होंने एक बुक पड़ी हुई है।

आगे की तरफ हमें पेड़ दिख रहे हैं जो हरे भरे हैं।

यहां एक बिल्डिंग है येलो कलर की जिस पे स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लिखा हुआ है।

ये एक छोटे से गार्डन की फोटो है जहां पे हमें कुछ बत्तख और कुछ मुर्गे दिख रहे हैं।

राइट साइड में अंब्रेला के अंदर एक टेबल और तीन चेयर दिख रही है।

फोटो में हमे एक बोर्ड दिख सकता है जिसमे डॉक्टर श्रेय एस देसाई एम_बी_बी_एस फैमिली फिजिशियन लिखा हुआ है।

जो येलो और ऑरेंज कलर के हैं।

और घर के आगे एक छोटा सा पौधा है जिसमें फूल लगे हुए हैं।

एक घर के आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है और एक घर के आगे एक स्कूटी खड़ी हुई है।

नीचे लिखा हुआ है नाउ रेस्टोरेंट इस ओपन --

विंडोज लगी हुई हैं जो येलो और ब्राउन कलर की है।

मछलियां जो रखी हुई हैं वो एक ब्लैक और पिंक कलर के चेक कपड़े पे रखी हुई हैं।

और हमें पीछे एक स्टोरेज कैबिनेट भीं दिख रहा --

उसके आगे बहोत सारी रेड कलर की चेयर पड़ी हुई है।

उसके के दरवाजे पे बैलून लगे हुए हैं जो ब्ल्यू और व्हाईट कलर के हैं।

फोटो में हमें बच्चे दिख रहे हैं जिन्हें वाइट और पिंक कलर की फ्रॉक्स पहनी हुई हैं।

ये लोग ग्रीन और रेड कार्पेट पर खड़े हुए हैं।

पीछे हमें कुछ बेड्स भी दिख रहे हैं जो ब्लैक ब्राउन कलर के हैं।

जो आगे कर रही है फीड एक रिवर को फीड कर रही है।

उसके आगे कुछ सीढ़ियां हैं जो घाट की तरफ लीड कर रही हैं।

जिसके नीचे हमें लेफ्ट साइड में एक ग्लास डोर दिख रहा है।

राइट साइड में हमें कुछ चेयर्स दिख रही हैं।

फोटो में हमें राइट साइड में एक बड़ी बिल्डिंग भी दिख रही है जो दो फ्लोर्स की है।

लेफ्ट साइड में हमें ब्राउन वॉल्स दिख रही हैं।

इस फोटो में हमें बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

आगे एक इंसान है जिसने ब्लैक और ग्रे कलर की चेक शर्ट पहनी हुई है।

सामने हम एक औरत को देख सकते हैं जो झु झुकी हुई बैठी हैं और हाथ जोड़े हुए हैं।

ये एक शॉप की फोटो है जहां पे हमें अलग अलग तरह के नमकीन कैबिनेट दिख रहे हैं।

ऊपर हमें बैलून दिख रहे हैं जो ब्लू और रेड कलर के हैं।

ये एक कन्वेनिएंट स्टोर की फोटो है जहां पर हमें अलग अलग एवरीडे आइटम्स दिख रहे हैं।

यहां पे आगे शैम्पू और सॅवलॉन की बॉटल्स रखी हुई हैं।

लेफ्ट साइड में हमे कुछ गाड़िया दिखाई हुई है।

हमें लेफ्ट साइड में देखने से लग रहा है ये एक पेट्रोल पंप है।

इस बिल्डिंग के आगे एक छोटा सा सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिख रहा है।